ये किसी पत्थर की मूर्तियां बनी दिख रही है जिसके अंदर सामने तथा इसमें कुछ मूर्तियां बनी दिखाई दे रही मुह बना हुआ दिखाई दे रहा ऊपर के साइड मे कुछ पक्षी दिखाई दे रहा व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा --

किसी नदी के ऊपर बने हुए पूल का फ़ोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर नीचे गोल डिज़ाइन का कुछ बना हुआ है उसके ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है और ऊपर के साइड मे कुछ सपोर्ट के लिए रेलिंग लगी दिखाई दे रही है।

रखी दिखाई दे रही है सामने एक साइड खेत जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसमें एक व्यक्ति चलते हुए दिखाई दे रहा है पीछे क साइड में चद्दर लगे है पिल्लर लगे दिखाई दे रहे है और नीचे की साइड में कुछ लकड़ियाँ और बास पड़े हुए दिखाई दे रहा हैं।

ये कई सारे जानवर की फोटो दिखाई दे रही है जानवरों की पूछ काली और सफेद कलर हैं और वो एक ऊपर एक बैठे हुए दिख रहे हैं इनके पीछे नीचे की साइड में घास दिख रही है ऊपर की साइड में कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं पीछे कुछ बाँस--